चित्र में बस का कलर ग्रीन दिख रहा है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है।

और कुछ ब्रेड के पैकेट दिख रहे हैं।